बहुत सारा संतरा और तेल का बोतल और एक इंसान भी दिखाई दे रहा है।

घर ऊपर में दो काला सिंटेक्स भी है।

एक का बोतल भी दिखाई दे रहे हैं।

इसमे काले रंग का चेयर लोग रखे हैं एक मशीन में दिखाई दे रहे है।

स्विच बॉक्स भी है और एक पानी गरम करने वाला जग भी है।

तस्वीर में मुझे एक सफेद रंग का चर्च दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा कितने लोग चल के भी है।

में बहोत सारा पौधा निकल के है।

जिसमें बहुत सारा खिड़की सब हैं।

तस्वीर में मुझे एक दुकान दिखाई दे रहे हैं।

जैसे कि नीला है हर है लाल है और पीला रंग का है।

और बहुत सारा बड़ा बड़ा पेड़ लोग भी है।

पीछे में बहुत सारा सफेद रंग का करके है।

तस्वीर में मुझे बहुत सारा बिल्डिंग और बहुत सारा दिखाई दे रहे हैं।

इसके अंदर एक शेर को रखा हुआ है।

और ग्रास सब भी है।

और बहुत सारा इंसान लोग भी है और बहुत सारा चेयर लोग भी है।

सब भी दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर में मुझे एक रूम दिखाई दे रहे हैं जिसमें एक बिस्तर रखे हैं।

जिसमें सफेद रंग का कपड़ा लगाया हुआ है। एक हाथ धोने का जगह भी दिखाई दे रहे जिसमें हैंडवाश भी रख के हैं।

एक छत भी दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे बहोत सारा बड़ा बड़ा पेड़ लोग दिखाई दे रहे हैं।

के ब्राऊन और सफेद रंग का है।

बिल्डिंग के नीचे दुकान सब भी है जिसमें बहुत सारा लोग रक्खे है।

बहुत सारा गाड़ी लोग पार्क करके रखे हैं।

और सामने में एक बच्चा भी है जिसने सफेद रंग का शर्ट और जींस पैंट पहन के है।

और पीछे में बहुत सारा चेयर भी रखें है।

एक सफेद रंग का पॉट भी है जिसमें पौधा उगे हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक पत्थर का पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।

इसमें एक का सीढ़ी भी बना हुआ है और बहुत सारा भी रखे है।

दुकान में बहुत सारा बास्केट भी रखे हैं।

इसमें एक लंबा सा टेबल रखे हैं जिसमें बहुत सारा टिशू सब है।

और बहुत सारा बिल्डिंग और घर लोग भी है।